यहाँ पर आद दो आदमी निकल रहें हैं।

और एक आदमी गाड़ी पर बैठ के--

और बाहार में ब्रेसिंग लगा हुआ है।

यह एक चदरा है और उसमें लाल रंग के गाड़ी भी है पाया सब लगा हुआ है।

और गेट लगा है। बहुत आसमान बहुत साफ़ है और बहुत सुन्दर है।

मकानों एक है। पेड़-पौधा बहुत सारा है घास लगा हुआ --

और यहाँ गेंदे का जैस्मिन का फूल लगा हुआ है ये उजला कलर का है।

और गेंदे का फूल है और बहुत सारा गमला है।

और अम्म कागज़ सब रखा हुआ हैं टोकरी में और फल सब।